बहुत सारे बेंच और कुर्सियां है जोकि बोहोत ही स्टूडेंट अपना काम में लगे हुए हैं । एक टीचर है और पांच एलएडी हैं जो की कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे हैं ये सब ।

बहोत ही बढ़ियां बहोत ही सुन्दर ओपीडीओपी लिखा हुआ है और एक पंखा भी है और औरत का पोस्टर भी लगा हुआ है और एक महिला है जोकि मास्क लगाके खड़े हैं हाथ में कागज लेके दो आदमी भी खड़ा है हाथ में कागज लेके और एक साहब बैठा हुआ हैकुर्सी में जोकि बुक में साइन करने --